ये स्कूल है और स्कूल में देखिए काफी सारे बच्चे हैं जो यूनिफार्म पहने हैं व्हाइट कलर --

ये विष्णु बिहार मंदिर है।

गेट जैसा लग रहा है और काफी बड़ा गेट है उधर गाड़ी लगी हुई हैं ये दिल्ली की गाड़ी लगी हुई है।

ये आदमी कटवा के खड़े हुए है।

ये कारखाना है यहाँ पर काफी सारे --